एक लाइन का तार घिचा हो वो भी बहुत अच्छा है देखने में सुन्दर लग रहा है।

पुल बना हुआ है नीचे से पानी नहीं है गाय चर रहा है बकरी चर रहा है हरा-हरा दिख रहा है एक तार घीचा हुआ है वो भी बहुत अच्छा से घीचा हुआ।

बहुत अच्छा मंदिर है घर है बहुत अच्छा घर कुछ लंबत है नीचे चौड़ाई कम है पर ऊपर लंबा कर दिया है साइड से गोला वाला पेड़ लगा दिया उसमें जंगल बहुत ऊंचा है।

साइड से बहुत अच्छा दिखने में लगता पानी पूरा प्योर उजला है।

पानी में कोई दिक्कत नहीं है हरा-हरा नीला सब कुछ दिख रहा --

नीचे साइड से जाता और वो भी अच्छा से जा रहा है पानी हम लोग का